जिनके अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

और एक मेज भी रखी हुई है।

और एक एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिवा खड़ी हुई हैं।

और साइड में दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हैं।

और बोहोत सारे व्यक्ति इसके पीछे जा रहे हैं।

यह एक घर है और इस पर आयरन कल्चर लिखा हुआ है और इसके बाहर एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा पानी का जहाज है।

और साइड में एक टावर भी है और सामने सूरज दिख रहा है।

और कुछ गुब्बारे भी लगे हैं और शीशे के गेट भी लगे हुए हैं।

और साइड में पेड़ पौधे भी खड़े हैं।

और पीछे दो महिलाएं भी खड़ी है।

और पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है।

और इसके साइड में बहोत सारे घास व पेड़ खड़े हुए है।

और ऊपर एक लाइट भी लगी है।

और इसके अंदर एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है।

और इसके नीचे एक पुराना टैक्टर भी खड़ा हुआ है।

जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरह के समान रखें हुए हैं।

और जिस पर प्रकाश स्टील में लिखा हुआ है।

और नीचे बहुत सारी टाइले लगी हुई हैं।

और ब्रिज के ऊपर एक डस्टबिन रखा हुआ है।

यह एक गेट है जो की बहुत सुंदर लग रहा है।

और बाहर एक पाइप भी टंग रहा है और साइड में एक लोहे गेट भी है और एक खंभा भी है।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

यह एक दुकान है जिसमे चिकन मिलता है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके बाहर दो कारें खड़ी हुई हैं।

और साइड में एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और गेट पर कुछ कागज चिपके हुए हैं।

और बाहर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

और नीचे बहुत गद्दे बिछे हुए हैं।